यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे है |

ये लाइब्रेरी है ह ये लाइब्रेरी है। इसमें देखो पढ़ा रहे हैं।

कोचिंग मिल रही है यहाँ जी हां कोचिंग देखिये।

यहाँ पे देखिये दुकान लगी हुई है। यहाँ कितनी सारी बोट खड़ी हुई है कितने सारे आदमी हुए --